पोल है ओकरा में तार है चार गो कुछ बादल है गड़िया सब जारहले है और कुछ में भरे गाड़ी है और--

मॉल हो या सब रा-राशन वाला सामान हो पियाज रखल बागे रेल मे जे तेल हो।

नीचे में ब्लैक कलर के में।